सुंदर दिखाई दे रही है।

यह फोटो मां नर्मदा सर्विस सेंटर का है।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहं फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट का है।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

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट का है।

जहां पर गऊ माता को बांधा गया है।

यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है।